प्रस्तुत छवि में एक अधूरा इमारत दिखाई दे रहा है।

हॉल में नीली और गुलाबी रंग की बैलून से भी सजावटें की गई है।

दोस्तो छवि में बहोत सारी बैगे दिखाई गई है।

कुछ बैगों को जमीन से कुछ ऊपर अलमीरा में रखा गया है।

प्रस्तुत छवि में एक बड़ी सी एंट्रेंस का दरवाजा दिखाया गया--

एवं एंट्रेंस पर दो दरबार में खड़े हैं जो अपने हाथों में भाला लिए हैं।

ज्वेलरी शॉप में बहुत सारी कुर्सियां हैं अधिकांश कुर्सियों का रंग भूरा है।

सीलिंग को सफेद रंग से रंगा गया है।

कुर्सी पर जग रखा हुआ है और कुछ उसकी कांच की गिलासें भी देख रही है।

एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है जिसपर एक्साइड नियो लिखा गया है।

पौधों के बीच में एक आदमी खड़ा है और उसके बगल में एक और आदमी खड़ा है।

पौधे बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं।

दुकान में बहुत सारी खाद्य पदार्थ दिख रही है।

प्रस्तुत छवि में बहुत सारी बड़ी छोटी डिबिया दिखाई दे रही हैं।

कुछ का रंग सफेद तो कुछ का रंग हरा ब्लू एवं काला है।

कमरे में बहोत सारे एक्वेरियम रखे गए हैं।

कमरे में एक छोटा सा अलमीरा भी है जिसमें दो एक्वेरियम रखे गए हैं।

मैदान में एक डायनासोर की आकृति भी बनी हुई है।

आसपास बहोत से पेड़ है जो बहोत बड़े और हरे भरे दिख रहे है।

एवं दूसरे मशीन का रंग ग्रे और तीसरे मशीन का मा रंग लाल और ग्रीन मिक्स है।

प्रस्तुत छवि में बहोत सारे प्लास्टिक के पैकेट दिखाए गए हैं।

पीले रंग के प्रोटीन पर आइसो प्रो जीरो लिखा गया है और वो भी वेल फार्म का है।

इस छवि में एक बड़ा सा कमरा दिखाया गया है।

कमरे में सभी लडकियां ही हैं।

प्रस्तुत छवि में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

ये महिलाएं एक तरह का योगासन मुद्रा में हैं।

उसके पीछे जो बड़े बड़े लाल रंग के पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

छवि में एक बहुत बड़ा वाहन दिखाई दे रहा है जिसकी कोई टायरे नहीं है।

कुर्सियों का रंग काला है एवं एक सिंगल कुर्सी भी दिख रही है।

अनेक लाइट लगे हुए है।

इमारत के बाहर बहोत सारी दो पहिया वाहन खड़ी है।